साइलैब की मदद से आइटरेटीव आंकलन के इस टूटोरीयल में आप सबका स्वागत है
हमने यहाँ Macमैकऑपरेटिंग सिस्टम में साइलैब 52 वरज़न संस्करण का इस्तेमाल किया है लेकिन यह आंकलन दूसरे वरज़न में भी चलने चाहिए और साइलैब में भी जो की लिनक्स और विन्डोज़ में चलता है
हम iterationसीई फाइल में से उपलब्ध कोड का इस्तेमाल करेंगे
हमने इस फाइल को साइलैब एडिटर की मदद से खोला है जिसे सिर्फ एक एडिटर की तरह इस्तेमाल करेंगे
चलिए कोलोन ऑपरेटर की मदद से वेक्टर बनाते है
आई 15 चलिए कोलोन ऑपरेटर की मदद से वेक्टर बनाते है
आई 15 यह एक वेक्टर बनाएगा एक से पाँच एक एक की बढ़त से
आई 125 इस कमांड में हम देख सकते है की बीच का तर्क दो बढ़त का संकेत देता है
एक यह पहला तर्क है जहाँ वेक्टर शुरू होता है
आई पाँच के आगे नहीं जा सकते हाँ लेकिन यह पाँच के बराबर हो सकता है
ध्यान दीजिए की अगर अंतिम तर्क बदलकर छह हो जाता है तब भी परिणाम वही रहता है
आई 126 इस व्यवहार की व्याख्या करना मुश्किल नहीं है
क्या आप सोच सकते है की ऐसा क्यों होता है160
अब हम आइटरेटीव आंकलन करने के लिए फोर फॉर स्टेटमेंट के उपयोग का प्रदर्शन करते है
फोर आई 127 डिस्प इंड जैसे ही हम लूप से जाते है यह कोड आई प्रिंट करेगा
थिस कोड प्रिंट्स आउट आई एएस वे गो थ्राउघ थे लूप
यह प्रदर्शन कमांड डिस्प के वजह से हुआ है - यहाँ पारित तर्क प्रदर्शित हुई है
याद कीजिये के फोर लूप का इस्तेमाल इनटीजर वालयूज़ के लिए होता है
इस केस में चार इनटीजर वालयूज़ 135 और 7 प्रदर्शित हुए है
फोर लूप्स में जितनी बार आइटरेशंस होती है उसे प्रायोरी कहते है
हम इस टूटोरीयल के शेष भाग में डिफौल्ट इन्क्रीमेंट ऑफ 1 को लेकर चलेंगे
चलिए उस लूप से शुरू करते है जो आई को एक से पाँच के बराबर प्रदर्शित करता है
फोर आई 15 डिस्प इंड हम इस कोड को रूपांतरित कर सकते है ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट के इस्तेमाल से
फोर आई 15 डिस्प इफ आई2 ब्रेक इंड इंड ध्यान दीजिए की आई का प्रदर्शन सिर्फ 2 तक हुआ है
यह आइटरेशन आई के अंतिम मान जो की पाँच है तक नहीं चलाया गया है
जब आई 2 के बराबर होता है तब इफ ब्लाक पहली बार एक्सीक्यूट होता है
मगर ब्रेक कमांड लूप को टर्मिनेट याने के समाप्त करता है
अगर कोई इंटरमिडीएट दर्मियानी कंडीशन संतुष्ट होती है और हमें लूप से बाहर आना है तो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते है
ध्यान दीजिए के i2 स्टेटमेंट दो बार इकवल टू साइन का उपयोग करता है
प्रोग्रामिंग लान्गुवेजस में इक्वालिटी की तुलना करने के लिए यह एक मानक तरीका है
इस कमपेरीज़न का परिणाम है बूलियन160सही या गलत अब हम कंटीन्यू कन्टीन्यू स्टेटमेंट को प्रयुक्त करते है फोर आई 15 इफ आई3 थेन कंटीन्यू एल्से डिस्प इंड इंड यह मौका देगा आई को सिर्फ 4 और 5 तक प्रदर्शित होने का
आई अगर तीन से कम है या तीन के बराबर जैसे के ilt3 स्टेटमेंट द्वारा दिया गया तो कुछ नहीं होगा
कनटीन्यू कमांड प्रोग्राम की बाकि लूप को स्किप करता है याने के छोड़ देता है
यह ब्रेक कमांड की तरह लूप को समाप्त नहीं करता
आई परामीटर इन्क्रीमेंट होती है और इस आई के लिए लूप के सारे आंकलन एक्सीक्यूट होते है
हम एक छोटा अंतराल लेते है और देखते है के किस तरह lt टाइप के ऑपरेटर के लिए मदद ले सकते है
चलिए टाइप करते है हेल्प थिस ओपन्स थे सिलाब हेल्प ब्राउजर
हम हेल्प विंडो में देख सकते है की लेस के अधीन हेल्प मौजूद है
इसलिए टाइप करेंगे
हेल्प लेस हम यहाँ ज़रूरी हेल्प अनुदेश देख सकते है
फोर स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग लान्गुवेजस से ज्यादा साइलैब में शक्तिशाली है
उदाहरण के लिए वेक्टर पर एक फोर लूप का प्रदर्शन करते है
व 1 5 3 फोर एक्स व डिस्प इंड यह लिपि व के सारे मान को प्रदर्शित करती है
अब तक हम सिर्फ वेरीयेबल्स का प्रदर्शन का कर रहे थे
हम वास्तव में आंकलन के परिणाम को भी प्रदर्शित कर सकते है
निम्नलिखित कोड संख्याओं के वर्ग को प्रदर्शित करता है
व 1 5 3 फोर एक्स व dispएक्स2 इंड हमने काफी समय फोर लूप को समझाने में बिताया है
अब चलते है व्हाइल वाइल लूप की तरफ
अगर बूलियन एक्सप्रेशन सही है तो व्हाइल स्टेटमेंट लूप को प्रदर्शित करने की आज्ञा देता है
लूप की शुरुवात में अगर एक्सप्रेशन सही है तो लूप के स्टेटमेंट्स एक्सीक्यूट होते है
अगर प्रोग्राम सही लिखा है तो एक्सप्रेशन गलत हो जाता है और लूप समाप्त होती है
चलिये अब व्हाइल लूप के लिए उदाहरण देखते है आई 0 whileआई5 आई i1 डिस्प इंड आई के मान एक से लेकर छह तक प्रदर्शित है
व्हाइल लूप में ब्रेक और कनटीन्यू स्टेटमेंट्स उसी तरह काम करते है जिस तरह की फोर लूप में
चलिए ब्रेक के इस्तेमाल से इसका प्रदर्शन करते है
हम देख सकते है के जैसे ही आई तीन के बराबर हो जाता है प्रोग्राम लूप से बाहर निकल जाता है शुक्र है ब्रेक स्टेटमेंट का
व्हाइल लूप में आप कनटीन्यू स्टेटमेंट के लिए उदाहरण की कोशिश कर सकते है
हम साइलैब की मदद से आइटरेशन के इस टूटोरीयल के अंत में आ चुके है
साइलैब पर टूटोरियल टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे समर्थित किया है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने इक्ट के माध्यम से
अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro इस टूटोरियल में जुड़े रहने क लिए धन्यवाद नमस्कार